मुकुट पहनले हई के ने ए जय मुकुट --

ब्लू कलर के हय उज्जर हयय।

सूटकेस करिया हई कपड़ा हई उज्जर एगो मर्दवा चश्मा लगेले हई।

उ हरियर लउकेत हई एगो पूल हयय।

बहुते लोहा उहा टाँगल हेय घर उर लेकिन हेय एगो आदमी करिया --